एक बिल्डिंग है यहाँ पे शटर लगा हुआ है गुबारों से सजाया है गुबारों में एक ब्लू कलर एक वाइट कलर के गुबारों से सजाया गया है दो गाड़िया खड़ी हुई है।

जिसमें कुछ लोग बुद्ध-द धर्म के लग रहे हैं वहीं पर एक आदमी है जिसने अ-कोठी पहना हुआ है वाइट कलर का उसने कुर्ता पजामा पहना है पीछे एक परपल कलर का कुर्ता पहना हुआ है।

वही कुछ लोग दिख रहे है जोकी आराधना मे विलिं है पीछे एक बिल्डिंग है सामने एक क्राइस्ट की निशान है मरियम माता कि मूर्ति है।

कार का डीजल का ढक्कन नजर आ रहा है बंदे ने एक-के-चेक्स शर्ट पहना --

आर्टिफ़िशियल प्लांट से सजाया गया है एक रैक रखा गया है जिसमे कुछ क्रीम और सीरम नजर आ रहे है सामने एक पानी का बोटल दिख रहा है।

एक लड़की जो गुलाबी रंग का कुर्ती पहनी है व्हाइट कलर का पैजामा पहनी है और सफ़ेद कलर का ही दुपट्टा लगाई हुई है वही बगल में खड़ी लड़की येलो कलर का कुर्ती पहनी --

छोटे-छोटे बच्चे जो की बैठ के पढ़ाई कर रहे है वही एक चेयर है पीछे एक सिक्सा है साइकिल सिक्स और एक लड़की खरी है जिसने येल्लो कलर का आ लपटा हुआ पीछे एक झोपड़ी है।

तीन नाव नजर आ रही है खूब सारे लोग दिख रहे हैं एक नदी दिख रही है नाव में झंडा लगे हुए है ऊपर आसमान है आइसक्रीम का ठेला है एक ए-ए-ए गुपचुप का ठेला है ए-व एक और गुपचुप का ठेला हैं।

ये क्रश एरिया नजर आ रहा है जहाँ पे खूब सारे अलग अलग तरह कि बिल्डिंग ये नजर आ रही है वही सामने दुर्गा देवि मंदिर नजर आ रहा हैं।

जमीन नजर आ रहा है हल्का सा बादल भी नजर आ रहा है घरों की खिड़कियां नजर आ रही है।

एक सैलून की तस्वीर नजर आ रही है जहां पे ब्लू और सफेद कलर में दुकान का लिखा गया है वही लाल कलर का बोर्ड लगे गया है जिसमे तीन लाइटें दिख रही कांच के दरवाजे है एक आदमी खड़ा हुआ है।

एक बच्चा जिसका बाल कटिंग हो रहा है तो उसके बाल को सेटिंग करने के लिए क्लिप लगा दिया गया है वहीं एक छोटी बच्ची जो येलो कलर का कपड़ा पहन के बैठी हुई हैं।

एक मंदिर की तस्वीर है स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है एक ऑटो खड़ी हुई है एक ई रिक्शा जा रही हैएक गुटके का दुकान दिख रहा है ऊपर बास लगे हुए हैं।

किसी समान का वितरण समारोह है जहा पे खूब सारे छोटे-छोटे बच्चे है वही पे दो लड़किया नजर आ रही है टेबल है जिसमे खूब सारे समान रखहे गए हैं। खुर्सिया है लाल कलर की --

पीछे पेड़ है बगल में फाउंडेशन का पोस्टर लगा हुआ है साथ ही सदियों से कवर किया गया है।

दो डिब्बे हैजिसमे एक मे चिली फ्लेक्स नजर आ रहा चेयर है।

किसी रेल्वे स्टेशन की तस्वीर है जहा पे खूब सारी ऑटो ए रीक्शा ख अ साइकल रिक्शा खड़े हुए है।